सड़क पर कई लड़के और लड़कियाँ दिख रही हैं।

कुछ औरत लोग खारा दिख रहा है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं ।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

एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है।

घर का कलर वाइट दिख रहा है ।

घर में लाइट बढ़ रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं बोंडरी घेरा हुआ है।

एक लड़की खड़ा है।

लकड़ी का गेट दिख रहा है।

बैलून दिखाई दे रहा है।

दो लैपटॉप दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक गैराज दिख रहा है।

कई सारे गाड़ियाँ बन रही है .

टेबल दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर--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

एक पुतला दिखाई दे रहा है।

जिसको लहंगा पहनाया गया है।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

जिसमें कई सारे कुर्सियाँ दिख रही हैं।

जो कि वो डांस क्लास है दो लड़के डांस कर रहे हैं।

घर का कलर वाइट है।

एक सीरी दिखाई दे रहा है।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

जिसके बगल में कई सारे--